दूसरे भाग में आपका स्वागत है
यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि डेटाबेस से जुड़ने के लिए आप अपने लोगिन डॉट पह्प पेज को एडिट कैसे करें
और डेटाबेस में उसके लिए अपना यूजरनेम और पासवर्ड कैसे चेक करें
अब हम पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हुए हैं
इसको रिफ्रेश करके और मेरे यूजरनेम और पासवर्ड को रिसेंड करके हम सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ कोई एरर्स नहीं हुई है
मेरा मतलब यहाँ इस एरर से है
और हमने देखा कि यदि हम डेटा टाइप नहीं करते हैं हमें एक एरर मिलती है
अब सबसे पहले मैं क्वेरी सेट करने जा रहा हूँ
यदि आपने पहले माइस्क्ल या किसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंगवेज का उपयोग किया है आप जानेंगे कि आप डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं
मुझे लगता है कि यह माइक्रोसॉफ्ट ऐक्सेस में है
अतः यहाँ हम लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट वास्तव में हम लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट क्योंकि हमें आईडी यूजरनेम और पासवर्ड की जरूरत है
मुझे नहीं लगता कि हमें इद की जरूरत है लेकिन फिर भीSELECT ताकि यह पूर्ण डेटा को ले लेगा
अतः सिलेक्ट फ्रॉम और हम इसे यूजर्स कहते हैं चलिए मैं इसे निश्चित करता हूँ
हाँ यूजर्स
तो सिलेक्ट यूजर्स और यहाँ हम लिखेंगे व्हेरे यूजरनेम जो कि यहाँ इसका नाम है
और हम लिखेंगे व्हेरे यूजरनेम इक्वल्स थे यूजरनेम जो टाइप किया गया है
अब यदि यह यूजरनेम मौजूद नहीं है हमें थिस यूजर डोएसेंट एक्सिस्ट जैसा कुछ एरर मेसेज प्रदर्शित करने की जरूरत है
अतः हम क्या करेंगे कि हम अन्य फंक्शन माइस्क्ल नुम रॉस नामक एक माइस्क्ल फंक्शन का उपयोग करेंगे
यह रोव्स की संख्या की गणना करता है जो आपके द्वारा दिए गए डेटाबेस क्वेरी से पुनः प्राप्त किया गया है
अतः हम लिखेंगे नमरोज इक्वल्स mysql num rows और कोष्ठकों में हमारे पास हमारी क्वेरी का नाम वेरिएबल है जिसे मैंने क्वेरी फंक्शन में संचित किया है
और यदि हम रोव्स की संख्या एको करते हैं
मैं अभी आपको बताऊंगा और खुद के लिए जाँचूँगा कि हमें 1 मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी 1 रो है
मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और डेटा की अन्य रो जोड़ता हूँ उदाहरणस्वरूप दूसरा यूजरनेम और दूसरा पासवर्ड
मैं उसकी अभी कोशिश करूँगा
मैं इसे बाद में जाँचूँगा
चलिए देखते हैं यूजरनेम काइल और इस समय पासवर्ड 123 है
चलिए इसकी कोशिश करते हैं और हम यहाँ हैं
एक सेकंड रूकें
हम यहाँ हैं
अतः हमें एलेक्स और काइल मिला
हम स्वतःवृद्धित हुई आईडीएस देख सकते हैं
आप यहाँ दोनों अपने पासवर्डस और 2 यूजरनेम्स देख सकते हैं
अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और देखें हमें क्या मिलता है
हो अच्छा
यह चेक का पूर्ण भाग है
1 वापस आने का कारण यह है कि यदि मैं केवल प्रत्येक यूजर का चयन कर रहा था और फिर रो की गणना कर रहा था तो वेल्यू में वृद्धि होगी
यहाँ वापस जाएँ और रिफ्रेश करें और हमें 2 वेल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ 2 रोव्स हैं
लेकिन यदि मैं लिखता हूँ सिलेक्ट व्हेरे थे यूजरनेम इक्वल्स माय यूजरनेम हम स्पष्ट रूप से चयन कर रहे हैं जहाँ मेरा यूजरनेम मौजूद है और वह 1 रो में है
आमतौर से वेबसाइट पर आपके पास डुप्लिकेट यूजरनेम नहीं होगा
अतः अभी हमें यह मिला है यहाँ कितनी रोव्स हैं यह जानने का उद्देश्य क्या है
अब उद्देश्य यह है कि हम लिख सकते हैं इफ num rows इस इक्वल टो ज़ेरो फिर इसका मतलबमाफ कीजिए इफ माय num rows डोएसेंट इक्वल ज़ेरो फिर हम कोड को निष्पादित कर सकते हैं हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें लॉगिन करने की जरूरत होगी
अन्यथा माफ कीजिए एल्से हमें एको करने की जरूरत है माफ कीजिए एल्से डाइ
हम मेसेज देंगे थाट यूजर डोएसेंट एक्सिस्ट
अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि रो वापस आ गयी है जहाँ हमने वह यूजरनेम दिया
और यदि यह शून्य के समान नहीं है हम लॉगिन करने के लिए अपना कोड निष्पादित कर सकते हैं
अन्यथा हम लिखेंगे डाइ और थाट यूजरनेम डोएसेंट एक्सिस्ट
यह 1 2 3 4 के समान होगा और आदि
माफ कीजिए यह समान होगा
यदि यह जीरो के समान नहीं है तो यह निश्चित ही किसी के समान है
और यदि यह किसी के समान होता है तो यहाँ कोड निष्पादित होगा
अतः यदि यह 0 के समान है मूलरूप से इसका मतलब है कि कोई भी रिजल्ट वापस नहीं आ सकता है
मैं इसे रिसेंड करूँगा
चलिए वापस चलते हैं
और अपने एचो num rows को हटाते हैं
तो चलिए अपने मुख्य पेज पर वापस जाते हैं और हम एलेक्स और एबीसी से लॉगिन करेंगे इस समय पासवर्ड कोई मायने नहीं रखता
कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी एरर्स वापस नहीं आयी
अब मैं बिली का उपयोग करता हूँ उदाहरणस्वरूप पासवर्ड टाइप करें और लोगिन लॉगिन पर क्लिक करें
थाट यूजर डोएसेंट exist
क्योंकि कोई भी रोव्स वापस नहीं हुई जिसका यूजरनेम बिली है
अतः हम देख सकते हैं कि वह कार्य कर रहा है
मैं अपनी मूल बातों पर वापस जाऊँगा
अतः एलेक्स और मेरा पासवर्ड एबीसी है
अब लॉगिन के लिए कोड
लॉगिन करने के लिए हमें पासवर्ड चेक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है
अतः पासवर्ड के लिए मैं फंक्शन का उपयोग करूँगा
माफ कीजिए फंक्शन नहीं मैं लूप का उपयोग करूँगा और वह लूप व्हाइल लूप होगा
मैं यहाँ वेरिएबल का नाम टाइप करूँगा
मैं इसे रोव कहूँगा और यह माइस्क्ल के समान है mysql रो को अरै के रूप में लाती है
अतः संक्षेप के लिए मैं लिखूँगा mysql fetch assoc और यह मेरी क्वेरी होगी
अतः मुझे मेरी क्वेरी यहाँ मिली
इससे हम यहाँ से प्रत्येक कॉलम डेटा को ले रहे हैं और रोव नामक एक अरै में रख रहे हैं
अतः स्पष्टतः व्हाइल लूप में हमारे पास कोष्ठक होंगे और हम कुछ वेरिएबल्स सेट करेंगे
मैं दब् यूजरनेम लिखूँगा जो कि यूजरनेम है जिसे मैं डेटाबेस से निकालूँगा यह रोव के समान है और यूजरनेम यह रोनेम है
अतः जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यह यहाँ रो नेम है
यदि यह डेटा की एक अरै है तो इनमें से प्रत्येक आईडी यूजरनेम पासवर्ड बनने जा रहे हैं
हम 012 का उपयोग नहीं कर रहे हैं
लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि यह कार्य करता है
अब हम इसे आसान रखेंगे और हम सीधे अपने कॉलम के नाम को संदर्भ करेंगे
अतः डेटाबेस यूजरनेम रोव होगा और क्योंकि यह अरै है जो हमारी क्वेरी में इस फंक्शन का उपयोग कर रही है
आगे हम लिखेंगे दब् पासवर्ड इक्वल्स रोव और फिर अपना पासवर्ड
अतः इसके बाद हम एको कर सकते हैं
नहीं वास्तव में हमें अपने दब् यूजरनेम और पासवर्ड के कंटेंट को एको करने की आवश्यकता नहीं है
जब तक कि हम एरर्स में रन करना चाहते हैं
हम पहले से ही जानते हैं कि वे हैं
हमने उन्हें डेटाबेस में देखा है
अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें चेक क्रियान्वित करेंगे
अतः चेक टो सी इफ थे मैच
इफ स्टेटमेंट का उपयोग करके यह करना काफी आसान है
इफ और यूजरनेम इक्वल्स और दब् यूजरनेम एंड और पासवर्ड इस इक्वल टो और दब् पासवर्ड तो हम कहेंगे कि यह सही है
अन्यथा हम कहेंगे कि यह सही नहीं है
मैं कोष्ठकों को हटा दूँगा क्योंकि यहाँ केवल एक ही लाइन है
अतःIncorrect password
एको करें
उसी की तरह इसे छोड़ दें
और यहाँ हम लिखेंगे एको यूरे in अच्छा विडियो की इस भाग की समाप्ति से पहले हम अभी इसको टेस्ट करेंगे
मैं पहले लिखूँगा एलेक्स और मैं गलत पासवर्ड डालूँगा
यह दिखायेगा इनकरेक्ट password और अब मैं एबीसी पासवर्ड डालूँगा और यह दिखायेगा यूरे in अतः हमने अपना यूजरनेम जाँचा और यह मौजूद है
हमने अपनी मौजूद फील्ड्स जाँची
तो कृपया अपना यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करें
यदि हम अपना यूजरनेम और गलत पासवर्ड एंटर करते हैं हमें एक एरर मेसेज मिलता है- इनकरेक्ट पासवर्ड
यदि हम सही पासवर्ड एंटर करते हैं हमें मिलता है यूरे इन
और यदि हम यूजरनेम एंटर करते हैं जो नहीं है हमें यूजर डोएसेंट एक्सिस्ट नामक एक एरर मेसेज मिलता है
अच्छा तो अगले भाग में मुझसे जुड़ें और मैं आपको बताऊँगा कि अपने सेशन्स और लॉगआउट पेज कैसे बनायें